ये एक गिटार कि दुकान है आर्टिस्ट कि जो कि बहुत हि शौकीन लगता--

माला पेड दीक्षिते आहे माला घर दीक्षिते आहे उमरा मधी लिखा हुवा दीक्षिते आहे माला घोडा दीक्षिते --

माला बॅनर दीक्षित आहे नंबर लिखा हुआ दीक्षित आहे माला घर दीक्षित आहे माला स्कूटी जाता हुआ इंसान दीक्ष--

इसके पीछे नीले कलर का बैनर लगा हुआ है।

दो-तीन आदमी आपस में बात कर रहे हैं।

ये एक बॅगन बॅलन्स डॉलर रिसर्च का मार्केट लग रहा है जिसमे गुब्बारे लगे हुए है।